पेड़-पौधे वगैरह लग रहे हैं। उसमे खम्भे-वम्भे वगैरह हैं।

जिम में उम्म लड़के उम्म जिम कर रहे हैं।

ब्रेंच रखी हुई है यहां --

मिस्त्री वगैरह घूम रहा है उस पे ।

योगा टीचर बन रहा है।

बहोत बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।